यह एक पार्लर है जिसका नाम सुधा पार्लर रखा गया है जहाँ पर तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

स्कूटी पर बैठा हुआ व्यक्ति ग्रे कलर की शर्ट पहनना हुआ है

जिसमें फिजिक्स वाला अपनी सफलता की फोटो को पब्लिक कर रहा है और इस फोटो में फिजिक्स वाला प्रचार कर रहा है।

कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा तिरंगा लगा हुआ है एक वाल वाच टंगी हुई है एक दुकान ओपन है।

एक टेबल है जिसके चारों और चेयर रखी हुई है वहाँ पर वाटर रखा हुआ है।

यह एक सरकारी दफ्तर है जहाँ पर एक कंप्युटर रखा हुआ है। पेंटर है।